यह एक कॉलेज की तस्वीर हैं जहाँ पर बहोत सारी कांच लगी है यहाँ पर कांच के अंदर क्लासेस बनी हुई हैं यहाँ पर--

ये सब्जी वाले ने ऊपर में एक पट्टी बिछा रखी है जिससे के उसे धूप ना लगे और वह पानी से भी बचा रहे यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगी हुई है जो की सब्जी भाजी खरीदने आए हुए है।